और एक हरे रंग से लिखा दिख रहा है निचे एक चैन गेट दिखा रहा है जो बंद दिख रहा है साइड में कुछ दुकाने दिख रही है जिनका शटर लगा हुआ दिख रहा है ऊपर एक गुम्बद दिख रहा है और एक लाल कलर का और एक पोस्टर --

हो रहा है बिल्डिंग के ऊपर झालर लगी हुई दिख रही है और बिल्डिंग के ऊपर एक बैनर लगा दिख रहा है जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है उसके ऊपर लाल अक्षर में कुछ लिखा दिख रहा है नीला एक वाइट अक्षर में लिखा हुआ दिख रहा है।

यह किसी बोर्ड का फोटो दिख रहा है जिस पर भूरे हुए अक्षरों में लाल अक्षरों में कुछ लिखा दिख रहा है | साइड में लोहे के पाइप छोटे छोटे दिख रहे हैं और पीछे भी कुछ लोहे के टिके हुए दिख रहे हैं | साइड में घर दिख रहा है जिस पर वाइट कलर की टंकिया दिख रही है।

इधर भी छोटे-छोटे गे बहुत सारे गेट दिखाई दे रहे हैं एक हरे कलर का गेट दिखाई दे रहा हैं और ऊपर जो टंकिया दिख रही हैं।

कॉलोअर्स और ये देख रहे है साइड में एक टेबल जैसा कुछ बना हुआ दिख रहा है। जिसका काला कलर दिख रहा है। साइड की दीवालो पर बहुत सारा यंहा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ऊपर भी एक दीवाल है जिसपे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

यह किसी कॉलेज या बिल्डिंग का फोटो दिख रहा है जिसमें लाल कलर के पटटे दिख रहे है कुछ नीचे नीले कलर के पट्टे दिख रहे है इसके ऊपर घास या गार्डन बनाया गया है।

यह कोई कॉलेज है किसी स्कूल का फोटो लग रहा है जिसके बाहर बहुत सारे बच्चे बैग टांगे हुए खड़े दिख रहे हैं एक सामने चैनल गेट दिख रहा है जो बंद दिख रहा है।

दो शटर दिख रहा है उसमें से एक शटर बंद दिख रहा है एक शटर खुला दिख रहा है उसी में एक शटर जो बंद है उस के ऊपर एक बैनर लगा दिख रहा है जिसमें लिखा दिख रहा है।

यह किसी रिक्शा का फोटो दिख रहा है इसके अंदर तीन चार रिक्शा दिख रही है दो रिक्शा ब्लू कलर एक रिक्शा रेड कलर की दिख रहीं है एक रिक्शा चैनल गेट में से बाहर खड़ी दिख रही है जो चैनल गेट खुला है और वाइट कलर का दिख रहा हैं।